यह जिम की ट्रॉफी रखी हुई है ए.के फिटनेस जिम सेलिब्रेशन चल रहा है वन ईयर का।

गिट्टी पड़ी हुई है। उसके पास में तसले औ फड़ुए भी पड़े हुए हैं।

ईट का एक अ ढेर लगा हुआ है एक गत्ता पड़ा हुआ है।

यह एक एल ई डी बल्ब लगा हुआ है। बल्ब के नीचे श्री श्री हनुमंत साधना धाम जलोन लिखा हुआ है।

दुकाने लगी हुई है। एक लड़की खड़ी हुई है। एक आंटी खड़ी हुई है। बहोत सारी भीड़ भाड़ भी दिख रही है यहाँ पे ।

कच्चे केले भी रखे हुए हैं। कट्टों पे कुछ और सामान रखा हुआ है। चार सफेद कट्टें दिखाई दे रहे हैं।

एक लोहे का गेट लगा हुआ है यहाँ पे बड़ा वाला। इसपे एंट्री का बोर्ड लगा टंगा हुआ है।

आगे वाला लड़का जो है चश्मा लगाये हुए है। गले मे चुन्नी डाले हुए --

अ यह एक होटल है केरला होटल वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट ।